उसकी दूरी साइड में मैदान में घास ज्यादा नजर आ रहा है।

यह एक जिम है। जिम में मशीन लगा हुआ है।

यह बच्चे का प्लेग्राउंड है स्कूल का। यहा पे रेलिंग लगा हुआ है। जिसमे रोड लगी हुई है।

मंदिर के ऊपर गुंबज में एक त्रिशूल लगा हुआ है।

जोड़े के ऊपर हेयर पलग पिन लगा हुआ है।

उस पेड़ के आस पास में पेड़ के जड़ो में वाइट कलर का चुना लगा हुआ है। बड़े पौधे भी है। छोटे ग्रास भी है।

और काफी चमक दार लग रहा है इससे ये रिसेप्शन ।